म्यूजिक देखने के लिए बहुत सारे --

यहां पे एक टेबल लता हुआ है।

यहां पे बाहर बाइक्स लगी हुई हैं।

किसी इंस्टिट्यूट का काम लगा हुआ है।

बाकी जो स्पीच सुन रहे है।

और प्रिंट आउट प्राइस थ्री रूपीज है।

दो गाड़ियां लगी हुए है एक ब्लैक कलर की है एक वाइट कलर की है।

बहुत ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं यहां पे--